एक छोटा सा घर इसमें दिखाई दे रहा है।

कितना प्यारा घर है सुंदर सा ये घर--

दे रही है बहोत सारे लोग यहां पर जमा हुए हैं।

सुंदर बर्तन दिखाई दे रहे हैं।

यह एक एंबुलेंस की तरह--

और ये शायद एक पार्क है।